ये ब बड़ी नदी दिख रही है जिसके अगल-बगल पेड़-पौधे बहुत सारे हैं और यहाँ अच्छी दिख रही है इस तस्वीर में।

साइड में हरियाली है और सामने बड़ी-सी एक बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है इस फोटो में और आकाश का रंग भी बहुत --